पेट्रोल भरवाने के लिए आते हैं।

औरं बहुत सारे लोग आते होंगे इसमे बोटिंग करने के लिए ओर ज्यादा चौड़ी नदी नहीं है लेकिन बोटिंग मे बहुत मजा --

आप लोग देख सकते है की ये परगति बुक सेंटर है यहाँ पे ढेर सारी किताबें हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट के किताबें मिलते है इसमे जैसे नीट वेगएरा बहुत सारे किताबें इसमे मिले जाते है।